यह एख समुंदर का --

यहाँ एक पेट्रोल टंकी है यहाँ कौन सा शहर का है ये तो पता नहीं चला रहा है पर यहाँ इंडियन ओल्ड लिखाया हुआ है।

फैक्ट्री है या हो सकता है यह गोदाम होगा यहाँ सरसों तेल रिफाइंड तेल का पेटी दिख रहा है बहोत सारे पेटी है और ऊपर का जो--